यहां पर सिंटेक्स की बहोत बड़ी ब्लैक कलर की तीन टंकिया रखी हुई--

टेंट वगैरह लगे हुए हैं यहां पर एक बहोत बड़ी मूर्ति रखी है किसी।

छोटी सी शॉप है यहां पे तीन लोग खड़े जिसने एक कलर का व्हाइट --

यहां क्रिश्चियन समाज के गुरु खड़े हुए हैं यहां पे काफी डेकोरेशन हो रहा है बलून से रेड एंड येलो कलर के पिंक कलर के काफी बलून से--

यह बहुत बड़ा सम्मेलन है यहां पे काफी ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा लोग आए हुए--

यह एक खेत भी है और बीच में से रोड गया है जिसके--

कुछ बना रहे हैं यहां पे लेडीज जो की मछली सेल कर रही है उनका तराजू वगैरा भी रखा हुआ है एक भईया मछली ले रहें --

पेज वगैरा भी लगे है जो की ब्लू ब्लू लाइट जल रही है उसमें आर्केस्ट्रा भी खड़े हुए है बहोत खूबसूरत लग रहे है यहां पे डेकोरेशन किए हुआ--